उन्होंने जो है कास्टूम वेयर कर रखे है भरतनाट्यम के हाथ में उनके --

और जो क्लिनिक है। उसके बाहर बहुत जादा भीड़ है।

चर्च के अंदर कि फोटो है जहाँ पे चर्च का सिंबल जो है पीछे कि ओर लगा हुआ है।

और ब ब कैंडल्स ले के कुछ बच्चे खड़े हुए है आगे की ओर--

एलइडी लगा हुआ है जहाँ पे कुछ इन्फोर्मेश्न्स आ रही है और यहाँ पे चेयर लगी हुई है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं।

एक शादी का टेंट है जो वाइट रंग का है उसके उपर रंग बिरंगी फूलो से लाइन बनी हुई है और सरकल बनाये हुए हैं।

और जो बैटरी रिक्शा है उनके ऊपर तीन लाइटें लगी हुई है|

जाली लगी हुई है और अंदर के ओर एक इन्सान है जो कि खड़े है|

और बाहर पुलिस वाले भी है और बहोत अधिक भीड़ भी है।